लोहा का खम्बा दिखेण लग्यां और हम देखण लग्यां कि दुइ बच्चा ई झूला उन्द रढ़न लग्यां अगल-बगल हमल डाला दिखेण लग्यां और छोटी-छोटी घास दिखेण लग्यीं।